बहोत सारी संख्या में लोग इधर मछली खरदीने के लिए खड़े हुए है।

लाल रंग नीले रंग से लिखा हुआ है स्वच्छ--

और बच्चे भी नज़र आ रहे है।

बड़ी अच्छी लग रही है ये झील।

ऐसा ये लग रहा है की ये शादी की तस्वीर है दूल्हा दुल्हन की--

कुछ विद्यार्थी खड़े है जो की किसी का पोस्टर लिए है।

और ये मगरमच्छ खुले में फिर रहा है ऐसा लग रहा है।

कोविड नाइनटीन की लग रही है देखा जाये तो--

चार करिगिर काम कर रहे हैं और कुछ करिगिर नीचे भी हैं।